मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात ने वर्ष 2020 में अपना आधा सफ़र अब पूरा कर लिया है
इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की आई स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी आयी मानव जाति पर जो संकट आया उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा आई कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है कि ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा है आई कोई लिख रहा है दोस्तों से बात कर रहा है कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है आई बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्दसेजल्द बीत जाए आई
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हों
67 महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ़ ये लड़ाई इतनी लम्बी चलेगी आई ये संकट तो बना ही हुआ है ऊपर से देश में नित नयी चुनौतियाँ सामने आती जा रही हैं
अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया आई कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाईबहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटेछोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है आई वाकई एकसाथ इनती आपदाएं इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखनेसुनने को मिलती हैं आई हालत तो ये हो गयी है कि कोई छोटीछोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़कर के देख रहें हैं आई

हमारे यहां कहा जाता है सृजन शास्वत है सृजन निरंतर है आई
मुझे एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं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
युगयुग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा आई
उसी गीत में आगे आता है
क्या उसको रोक सकेंगे मिटनेवाले मिट जाएं
कंकड़पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए आई
भारत में भी जहां एक तरफ़ बड़ेबड़े संकट आते गए वहीँ सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकोंअनेक सृजन भी हुए आई नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए नए सिद्धांत गड़े गए यानि संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पुष्पितपल्लवित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा आई भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढियों में परिवर्तित किया है
इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आई आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिये नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा
इसी साल में देश नये लक्ष्य प्राप्त करेगा नयी उड़ान भरेगा नयी ऊँचाइयों को छुएगा आई मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परम्परा पर है आई
मेरे प्यारे देशवासियो
संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं
भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मज़बूत किया है
दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है
लद्दाख में भारत की भूमि पर आँख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है
भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँखमेंआँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है
हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे
लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है श्रद्धांजलि दे रहा है
पूरा देश उनका कृतज्ञ है उनके सामने नतमस्तक है
इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है
अपने वीरसपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो ज़ज्बा है यही तो देश की ताकत है
आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो मातापिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं
बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूँज रहे हैं
वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा
यही हौंसला हर शहीद के परिवार का है
वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है
भारतमाता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है हर देशवासी को बनाना है
हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी
मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वोकल भी होगी
ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं
बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस ओर बढ़ चले हैं
इसी तरह तमिलनाडु के मदुरै से मोहन रामामूर्ति जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं
आज़ादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था
हमारे यहाँ अनेकों आर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थीं
उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे आगे हैं
आज़ादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था हम उसका लाभ नहीं उठा पाए
लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है
कोई भी मिशन peopleएस पार्टिसिपेशन जनभागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है
आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं
ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है
आप किसी भी प्रोफेशन में हों हरएक जगह देशसेवा का बहुत स्कोप होता ही है
देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है
आपकी यही सेवा देश को कहीं नकहीं मजबूत भी करती है और हमें ये भी याद रखना है हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी
हमारे यहाँ कहा जाता है
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय
खलस्य साधो विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय
अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है
लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है
भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है
भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा
भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत
भारत की परंपरा है भरोसा मित्रता
भारत का भाव है बंधुता हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो
कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है
अब हम अनलॉक के दौर में हैं
अनलॉक के इस समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना उसे ताकत देना
साथियो लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है
आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी
इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरुरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथसाथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं
खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन मैं बारबार करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिये अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी
अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था
वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था
कमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है
कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए
उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली
इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा
अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फसी थीं
इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है
इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है वहीँ दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नये रास्ते खोल रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो
हर महीने हम ऐसी ख़बरें पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं
यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतीय एकदूसरे की मदद के लिए तत्पर हैं वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है
अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली
यहां सियांग जिले के मिरेम गांव ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है
इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं
गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं
ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के बाहर क्वारंटाइन का इंतजाम करने का फैसला किया
उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर 14 अस्थायी झोपड़ियाँ बना दीं और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोपड़ियों में कुछ दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा
उन झोपड़ियों में शौचालय बिजलीपानी समेत दैनिक जरुरत की हर तरह की सुविधा उपलब्ध करायी गयी
जाहिर है मिरेम गांव के लोगों के इस सामूहिक प्रयास और जागरूकता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया
हमारे यहां कहा जाता है
स्वभावं न जहाति एव साधु आपद्रतोपी सन
कर्पूर पावक स्पृष्ट सौरभं लभतेतराम
अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गुण अपना स्वभाव नहीं छोड़ते
आज हमारे देश की जो श्रमशक्ति है जो श्रमिक साथी हैं वो भी इसका जीता जागता उदाहरण हैं
आप देखिए इन दिनों हमारे प्रवासी श्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानियां आ रही हैं जो पूरे देश को प्रेरणा दे रही हैं
यूपी के बाराबंकी में गांव लौटकर आए मजदूरों ने कल्याणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया
नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान आसपास के लोग भी उत्साहित हैं
गांव में आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है वो अद्भुत है लेकिन साथियो ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गांव के हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं
जैसा हमारे देश का स्वाभाव है मुझे विश्वास है साथियो कि आपके गांव में भी आपके आसपास भी ऐसी अनेक घटनाये घटी होंगी
अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आयी है तो आप ऐसी प्रेरक घटना को मुझे जरूर लिखिए
संकट के इस समय में ये सकारात्मक घटनाएँ ये कहानियाँ औरों को भी प्रेरणा देंगी
मेरे प्यारे देशवासियो
कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है
मैं लोंडों से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था
इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के आलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है
पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है
हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिससे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्थियर प्लैनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें
मेरे प्यारे देशवासियो
कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है जीवन क्यों है जीवन कैसा है हमें शायद ये याद ही नहीं आता
कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं
तो दूसरी ओर लोगों ने मुझे ये भी शेयर किया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान खुशियों के छोटेछोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में रेडिस्कवर किए हैं
कई लोगों ने मुझे पारम्परिक इंदूर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लेने के अनुभव भेजे हैं
हमारे देश में पारम्परिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है
जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा पचीसी
यह खेल तमिलनाडु में पल्लान्गुली कर्नाटक में अलि गुलि मणे और आन्ध्र प्रदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है
ये एक प्रकार का स्ट्रैटेजी गेम है जिसमें एक बोर्ड का उपयोग किया जाता है
इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौजूद गोली या बीज को खिलाडियों को पकड़ना होता है
कहा जाता है कि यह गेम दक्षिण भारत से दक्षिणपूर्व एशिया और फिर दुनिया में फैला है
आज हर बच्चा सांपसीढ़ी के खेल के बारे में जानता है
लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतीय पारंपरिक गेम का ही रूप है जिसे मोक्ष पाटम या परमपदम कहा जाता है
हमारे यहाँ का एक और पारम्परिक गेम रहा है गुट्टा
बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्थर उठाए और आप गुट्टे खेलने के लिए तैयार
एक पत्थर हवा में उछालिए और जब तक वो पत्थर हवा में हो आपको जमीन में रखे बाकी पत्थर उठाने होते हैं
आमतौर पर हमारे यहाँ इंदूर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती है
कोई एक चाल्क या पत्थर ले आता है उससे जमीन पर ही कुछ लकीरे खींच देता और फिर खेल शुरू हो जाता है
जिन खेलों में डाइस की जरूरत पड़ती है कौड़ियों से या इमली के बीज से भी काम चल जाता है
मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो कितने ही लोग अपने बचपन में लौट गए होंगे कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे
मैं यही कहूँगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों हैं उन खेलों को आप भूले क्यों हैं मेरा घर के नानानानी दादादादी घर के बुजुर्गों से आग्रह है कि नयी पीढ़ी में ये खेल आप अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कौन करेगा जब ओनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है तो बैलेंस बनाने के लिए ओनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसा करना ही होगा
हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है
हम भारत के पारम्परिक इंदूर गेम्स को नये और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें
उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएँगे और हमें ये भी याद रखना है हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल हैं और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं और मेरे बालसखा मित्रों हर घर के बच्चों से मेरे नन्हें साथियों से भी आज मैं एक विशेष आग्रह करता हूँ
बच्चों आप मेरा आग्रह मानेगें न देखिये मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूँ आप जरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो मातापिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और अपने दादादादी नानानानी या घर में जो भी बुर्जुर्ग है उनका इंटरव्यू रेकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में रेकॉर्ड करिए
जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटरव्यू करते हैं बस वैसा ही इंटरव्यू आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ
आप उनसे जरुर पूछिए कि वो बचपन में उनका रहनसहन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे सिनेमा देखने जाते थे कभी छुट्टियों में मामा के घर जाते थे कभी खेतखलियान में जाते थे त्यौहार कैसे मानते थे बहुत सी बातें आप उनको पूछ सकते हैं उनको भी 4050 साल 60 साल पुरानी अपनी जिंदगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए 4050 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहाँ रहते हैं वो इलाका कैसा था वहाँ परिसर कैसा था लोगों के तौरतरीके क्या थे सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जानने को मिलेगी और आप देखिए आपको बहुत मजा आएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमूल्य ख़जाना एक अच्छा वीडियो एल्बम भी बन जाएगा
यह सत्य है आत्मकथा या जीवनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है
आप भी अपने बड़ेबुजुर्गों से बातें करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बचपन उनके युवाकाल की बातों को और आसानी से समझ पाएँगे
ये बेहतरीन मौका है कि बुजुर्ग भी अपने बचपन के बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएँ
देश के एक बड़े हिस्से में अब मानसून पहुँच चुका है
इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित हैं बहुत उम्मीद जता रहा है
बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होंगी वातावरण भी हराभरा होगा
बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुवेनेट कर लेती है
मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है रिफिलिंग करती है
लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरतीमाँ का साथ दें अपना दायित्व निभाएँ
हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को पर्यावरण को बहुत मदद करता है
हमारे कई देशवासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं
कर्नाटक के मंडावली में एक 8085 साल के बुजुर्ग हैं कामेगौड़ा
कामेगौड़ा जी एक साधारण किसान हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत असाधारण है
उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चर्य में पड़ जायेगा
8085 साल के कामेगौड़ा जी अपने जानवरों को चराते हैं लेकिन साथसाथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नये तालाब बनाने का भी बीड़ा उठाया हुआ है
वे अपने इलाके में पानी की समस्या को दूर करना चाहते हैं इसलिए जलसंरक्षण के काम में छोटेछोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं
आप हैरान होंगे कि 8085 वर्ष के कामेगौड़ा जी अब तक 16 तालाब खोद चुके हैं अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से
हो सकता है कि ये जो तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़ेबड़े न हों लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है
आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है
गुजरात के वडोदरा का भी एक उदहारण बहुत प्रेरक है
यहाँ जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक दिलचस्प मुहिम चलाई
इस मुहिम की वजह से आज वडोदरा में एक हजार स्कूलों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है
एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल औसतन करीब 10 करोड़ लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाया जा रहा है
इस बरसात में प्रकृति की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की कुछ करने की पहल करनी चाहिए
जैसे कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियाँ शुरू होने जा रही होंगी
क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि इकोफ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमायें बनायेंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे
क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं जो नदीतालाबों में विसर्जित किये जाने के बाद जल के लिए जल में रहने वाले जीवजंतुओं के लिए संकट बन जाती है
मुझे विश्वास है आप ऐसा जरुर करेंगे और इन सब बातों के बीच हमें ये भी ध्यान रखना है कि मानसून के सीजन में कई बीमारियाँ भी आती हैं
कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है
आर्युवेदिक औषधियाँ काढ़ा गर्म पानी इन सबका इस्तेमाल करते रहिए स्वस्थ रहिए
मेरे प्यारे देशवासियो
आज 28 जून को भारत अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रृद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने एक नाजुक दौर में देश का नेतृत्व किया
हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव जी की आज जन्मशताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन है
जब हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनेता के रूप में उनकी छवि हमारे सामने उभरती है लेकिन यह भी सच्चाई है कि वे अनेक भाषाओँ को जानते थे
भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ बोल लेते थे
वे एक ओर भारतीय मूल्यों में रचेबसे थे तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था
वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे
लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है हमें जानना भी चाहिए
साथियो नरसिम्हा राव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे
जब हैदराबाद के निजाम ने वन्दे मातरम् गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था तब उनके ख़िलाफ़ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी
छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज उठाने में आगे थे
अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोरकसर बाकी नहीं छोड़ते थे
नरसिम्हा राव जी इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे
बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उनका आगे बढ़ना शिक्षा पर उनका जोर सीखने की उनकी प्रवृत्ति और इन सबके साथ उनकी नेतृत्व क्षमता सब कुछ स्मरणीय है
मेरा आग्रह है कि नरसिम्हा राव जी के जन्मशताब्दी वर्ष में आप सभी लोग उनके जीवन और विचारों के बारे में ज्यादासेज्यादा जानने का प्रयास करें
मैं एक बार फिर उन्हें अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
इस बार मन की बात में कई विषयों पर बात हुई
अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विषयों पर बात होगी
आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आईडीईएएस मुझे जरूर भेजते रहिये
हम सबमिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा हम इसी साल यानि 2020 में ही बेहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उंचाईयों को छुएगा
मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दशक में एक नयी दिशा देने वाला वर्ष साबित होगा
इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िये स्वस्थ रहिए सकारात्मक रहिए
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुतबहुत धन्यवाद